की दंडी भी लगी हुई है और एक रेड कलर का फूल भी रखा हुआ है।

लोहे के गेट मे एक लॉक भी लगा है नीचे बहोत सारे टाल्स भी लगी हुई है और एक केबिल भी डली हुई है एक लकड़ी का टुकड़ा भी डला हुआ है।

एक जीप रेड कलर की भी खड़ी हुई है। सड़क के किनारे दुकानें भी लगी हुई हैं। बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। पेड़ के पत्तों का कलर ग्रीन है।